ये एक बाहर से खींचा हुआ एक बार्बर का शॉप है।

फिर साइड पर एक बड़ा सा पिंजरा भी दिखाई दे रहे है।

बाइक का दुकान बन है सायद छतर बंद करके है।

पीछे पूरा पूरा दाग दाग दिखाई दे रहा है थोड़ा मोड़ा लाइट्स दिखाई दे रहा है छोटा छोटा--

इनके कोच भी दिखाई दिखाई दे रहे है सबके फेस ब्लर किए हैं।

ये बहुत अच्छे तरीके से कार्पेट से बिछाया हुआ है।

इस पिक्चर में हमें एक बुक शॉप दिखाया गया है जहां बहोत सारी बुक दिखाई देती मिल रही है।

इस पिक्चर में हमें एक शॉप दिखाया गया है जहां बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हाली रसगुल्ला घी मेगी जूस और बहोत कुछ दिखाई देने मिल रहे है टोकरी दिखाई दे रहे हैं।

फिर सभी ऑटो के ऊपर प्लास्टिक चिपकाए गया है क्योंकि वो नया है और फिर बलूनस भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रोड का खींचा हुआ पिक्चर है।

बहुत से आदमी बाइक से जाने वाले दिखाई दे रहे हैं शायद कोना में एक आदमी चेयर के ऊपर बैठा हुआ है।

ऊपर में भी है नीचे में भी है जहां तहां बिखरा हुआ है कापी किताब जो।

सामने में ही एक पेड़ बड़ा वाला दिखाई देने मिल रहा हैं ग्रासेस दिखाई देने मिल रहा हैं।

एक ठो बस स्टेशन टाइप का छोटा सा दिखाई देने मिल रहा है।

दूर पर लंबा सा ब्रिज दिखाई देने मिल रहे हैं फिर आसमान पूरा नीला है।

जैसी लड़की दिखाई दे रही है जो एक बहुत सुंदर से कपड़े पहन के दिखाई दे रहे हैं स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है अंदर पे।

इस घर में बहोत सारे खिड़किया भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान भी पूरा नीला और तरह तरह क्लाउडी बहोत अच्छा से दिखाई दे रहे है।

इस होटल की दीवारों पर बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है डिजाइन किया गया है।

इस पिक्चर मे हमे बहोत अच्छा सा व्यू भी दिखाई दे रहे है और सामने मे ही हमे एक छे थो घर दिखाई दे रहे है बो बहोत सुन्दर त तरीके से--